यहाँ एक कांच की प्लेट है जिसमे कांच के बाउल में तीन फ्लेवर की आइसक्रीम है और यहाँ तीन चम्मच हैं जिन --